और वह सुंदर-सुंदर मलाएं हैं और आदमी के हाँथ में भी कुछ मलाएं हैं।

और कुछ पेड़ भी है और बहुत अच्छा सीन भी है बहुत बड़ा मंदिर का ग्राउंड है।